सामने में शायद एक नदी भी है।

बाहर में एक बेसिन है और बेसिन का साइड में रख एक ब्लू बकेट है।

फोटो में एक नदी है बहुत बड़ा नदी है।

नदी का सामने में पत्थर है और दूर में पेर है।

ये एक एयरपोर्ट का फोटो है सामने में एक--

सामने में बहुत सारा पेड़ भी है।

वॉल में बहोत सारा चैन रखा हुआ है और--

दुकानदार में बहुत सारा कपड़ा टंगाया हुआ है शर्ट और टी शर्ट है हर--

ऊपर में एक फूल भी टंगया है और--

एक आदमी है जिसके जैकेट का कलर ग्रीन ब्लैक है।

नदी का लेफ्ट साइड में एक पहाड़ है।

शायद ये एक दुकान है और वो इंसान जो दुकान मालिक है।

बिल्डिंग में बहुत सारा खिड़की है और सामने खाली जगह है।

और ये यह घर जैसा दिख रहा है।

ये फोटो में दो रस्ता है एक--

और सामने दो तीन ठो बाइक खड़ा हुआ है।

पेर का नीचे में ग्रास है।

सामने में एक सोलर पैनल है।